काफी खूबसूरत लग रहा है देखने में और लाल कलर का जो है तजिया बेहनाया बनाया गया है जो देखने में काफी खूबसूरत है।